एक साइकिल दिख रहा है।

ये तस्वीर में बहुत पेड़-पौधा दिख रहा है जमीन हरा-भरा दिख रहा है एक --

यह तस्वीर में बहुत सारा दुकान दिख रहा है दुकान काफी गुब्बारों से सजा हुआ है एक सेटल का गेट दिख रहा है--

गेट का रंग लाल दिख रहा है।

ऊपर में बहुत सारा खिड़की दिख रहा है।

एक टी_वी चल रहा है नीचे जमीन दिख रहा है दीवार सफेद दिख रहा है।

सामने और कई गाड़ियां दिख रही है।

सामने की ओर बड़े-छोटे मकान दिख रहे है।

यह तस्वीर में एक इमारत दिख रहा है।

नीचे हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

यह किसी किताब कॉपी की दुकान है।

ऊपर का छत सफेद दिख रहा है।

बहुत सारा मकान दिख रहा है।

सामने दीवार पे तस्वीर टंगा है।

इस तस्वीर में बहुत बच्चे दिख रहे हैं।

एक हरा मैदान दिख रहा है।

एक रिक्शा दिख रहा है दो और रिक्शा दिख रहा है।

सामने कमरा दिख रहा है।

दीवार पे चित्र बना हुआ है।

एक इमारत दिख रहा है इमारत काफी बड़ा दिख रहा है।